ये देख सकते है ये खेल का मैदान है जोकि दिखने में बहोत ही बड़ा है और सभी बच्चे यहाँ पर खेल दिखा रहे है।

और इस मूर्ति को ये बहोत ही बड़ा है मूर्ति है और बहुत ही अच्छा से बनाया है।

देख सकते है ये एक सड़क है और सड़क के साइड में एक दुकाने भी है और देख सकते है कई प्रकार के दुकाने--

कई बड़े-बड़े पेड़ भी लगाया गया है और देख सकते है ये बहोत ही बड़ा पार्क है।

बाइक भी खड़े है और देख सकते है कई लोग यहाँ पर बैंक में आए हुए है देख सकते है बैंक बहुत ही बड़ा हैं।